एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

बालकनी का कलर ग्रे कलर का है।

और एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इंस्ट्रू इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं।

बाउंड्री पर कई सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

ये दो लाइने बनी हुई हैं जिस पर मेट्रो आती जाती हैं।

इस गेराज में कई सारे मोटरसाइकिल लाइन से खड़े हुए हैं।

टेबल का करल कलर ब्राउन है।

कई सारे फूल भी लगे हुए हैं।

और यह एक टेबल पर रखे हुए हैं।

ये एक इंडिया का झंडा लगा हुआ है बड़ा सा।

पोस्टर लगा हुआ है जिस पर ए जर्नी ऑफ लखनऊ मेट्रो लिखा है।

जिस पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा लिखा हुआ है।

और एक रेड कलर की चेयर भी रखी हुई है।

गुरुद्वारा के ऊपर एक मंदिर नुमा एक डिजाइन बना हुआ है।

और अगल बगल से दो सीढ़ी भी गई है।

दो तकिए हैं। दो कंबल हैं।

यह तस्वीर एक मैट्रो के अन्दर का तस्वीर है।

सामने एक बड़ा सा कंप्यूटर है।

एक रेड कलर की पट्टी भी लगी हुई है।

बिल्डिंग के नीचे लाइन से दुकान भी बने हुए हैं।

और बगल में जैन बंधु लिखा हुआ है।

और सामने एक पोस्टर लगा हुआ है।

पार्क में कई तरह के परधे लगे हुए हैं और फूल भी लगे हुए हैं।

गाड़ी के ऊपर एक बैग लगेज भी रखा हुआ है।

अंदर कई सारे दुकानें बनी हुई हैं।